नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में एक शादी का गार्डन नजर आ रहा हैं।

यहां दोनों तरफ होटेल्स बनी है जिसे की लाइट से सजाया गया है।

इस गार्डन में हमें बीच में एक फाउंटेन दिख रहा है जो कि फिलहाल में चालू है।

जहां पर इन मूर्तियों को हार फूल से सजाया गया है।

और यहां पर कुछ कुकिंग का मटेरियल भी रखा हुआ है गैस वगैरा भी यहां पर दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें एक शॉप दिखाई दे रही है।

इस शॉप का शटर ऑन है और यहां पर--

और यहां दुकान में अन्दर की तरफ कुछ कार्टून्स भरे हुए रखे दिख रहे हैं।

और हमें अह बहुत दूर तक ऊंचे-ऊंचे दिख रहे हैं।

नीचे की तरफ रैड कलर का चद्दर बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।

और इसमें हमें कुछ कॉइंस रखे हुए दिख रहे हैं ये कॉइंस बहोत ही पुराने जमाने के दिखाई दे रहे--

और ऊपर की तरफ एक बोर्ड लगा है डॉक्टर एम_के वर्मन का।

इस इमेज़ में अह स्टेट बैंक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ यहां एक बोर्ड लगा है और--

इस इमेज मे हमें बहोत ही सुंदर सुंदर पौधे और फूल लगे हुए दिख रहे हैं।

और यहां स्क्वेयर पर एक स्ट्रीट लाइट दिख रही--

यहां पर एक स्टेज दिख रहा है स्टेज के ऊपर हमें--

यह ढाबा प्लस गैरेज कंबाइन हैं।

यहां पर हमें एक हॉस्पिटल दिख रहा है इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग व्हाइट कलर की है और इसके बाहर एक पेड़ लगा हुआ है।

यह टैटू का शॉप मेंन मार्केट में नजर आ रहा है।

और यहां एक फैक्ट्री इलाका या कोई शॉप दिखाई दे रहे--

त्रिमूर्ति डेयरी एवं प्रोविजनल स्टार्स का--